नमस्कार जीचेम्पेंट में व्यू प्रिंट और एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे व्यू ऑप्शन्स जूम फैक्टर पेज सेटअप प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट प्रिंट करना इमेज को एसवीजी और पीडीएफ फोर्मेट्स में एक्सपोर्ट करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको परिचित होना चाहिए जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोलने के लिए दश होम पर क्लिक करें
प्रदर्शित सर्च बार में टाइप करें जीचेम्पेंट जीचेम्पेंट आईकन पर क्लिक करें
सबसे पहले मौजूदा फाइल खोलें
टूलबार से ओपन आ फाइल आईकन पर क्लिक करें
फाइल्स और फ़ोल्डर्स वाली विंडो खुलती है
सूची से pentane इथेन नामक फाइल सेलेक्ट करें
ओपन बटन पर क्लिक करें
अब सबसे पहले व्यू ऑप्शन के बारे में सीखें
व्यू मेन्यू पर जाएँ
व्यू मेन्यू में दो ऑप्शन्स हैं फूल स्क्रीन और ज़ूम जूम ऑप्शन सेलेक्ट करें
ज़ूम फैक्टर्स की सूची के साथ सबमेन्यू खुलता है
सूची में नीचे जाएँ और ज़ूम to160 सेलेक्ट करें
ज़ूम फैक्टर के साथ डायलॉग बॉक्स खुलता है
डिफ़ॉल्ट ज़ूम फैक्टर वैल्यू प्रदर्शित है
यहाँ हम ज़ूम फैक्टर को आवशयकता के अनुसार घटा और बड़ा सकते हैं
अप या डाउन एरो त्रिभुज पर क्लिक करें और ज़ूमिंग को देखें
एप्ली पर क्लिक करें और ओक पर क्लिक करें
प्रयुक्त ज़ूम फैक्टर के साथ स्ट्रक्चर प्रदर्शित होता है
आगे देखें कि पेज का सेटअप कैसे करें
फाइल मेन्यू पर जाएँ पेज सेटअप पर जाकर इस पर क्लिक करें
पेज सेटअप विंडो खुलती है
इस विंडो पर दो टैब्स हैं पेज और स्केल पेज टैब क्षेत्र रखता है जैसे पेपर सेंटर ऑन पेज और ओरिएंटेशन पेपर क्षेत्र में हम डिफ़ॉल्ट पेपर साइज सेट कर सकते हैं
अब चंगे पेपर टाइप बटन पर क्लिक करें
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलता है
यहाँ तीन ऑप्शन्स हैं फॉर्मेट फॉर पेपर साइज और ओरिएंटेशन फॉर्मेट फॉर क्षेत्र में अपना डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट करें
मैं अपना डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट करुँगी
भिन्न पेपर साइज के साथ पेपर साइज क्षेत्र ड्राप डाउन सूची रखता है
मैं आ4 सेलेक्ट करुँगी
इस क्षेत्र के नीचे आ4 साइज की डायमेंशन प्रदर्शित हैं
ध्यान दें कि प्रत्येक सेलेक्टेड पेपर साइज के लिए पेपर साइज डायमेंशन्स प्रदर्शित हैं
ओरिएंटेशन क्षेत्र में हमारे पास 4 रेडियो बटन्स हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप रिवर्स पोर्ट्रेट और रिवर्स लैंडस्केप डिफ़ॉल्ट से पोर्ट्रेट सेलेक्ट है
इसको ऐसा ही छोड़ दें और एप्ली पर क्लिक करें
आगे हमारे पास मार्जिन साइज हैं
टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन
यहाँ हम आवश्यकता के अनुसार मर्जिन्स रख सकते हैं
अगला क्षेत्र यूनिट है
यूनिट क्षेत्र को इंचेस मिलीमीटर और पॉइंट्स में सेट कर सकते हैं
ध्यान दें कि जब हम यूनिट बदलते हैं तो मार्जिन साइज अपने आप ही यूनिट को सूट करते हुए बदल जाता है
अब सेंटर ओन पेज के बारे में सीखते हैं
यहाँ हमारे पास दो चेक बॉक्स हैं हॉरिज़ोंटली और वर्टिकली
हॉरिज़ोंटली चेक बॉक्स पर क्लिक करें
हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने स्ट्रक्चर का प्रीव्यू देख सकते हैं
यहाँ हम प्रीव्यू देख सकते हैं
प्रीव्यू विंडो को क्लोज करें
ओरिएंटेशन क्षेत्र में हमारे पास निम्न के लिए रेडियो बटन्स हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप रिवर्स पोर्ट्रेट और रिवर्स लैंडस्केप डिफ़ॉल्ट से पोर्ट्रेट सेलेक्ट है
अब लैंडस्केप रेडियो बटन पर क्लिक करें
और फिर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें
यहाँ हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं
आप अपने अन्य ओरिएंटेशन ऑप्शन्स जाँच सकते हैं
अगर आप प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं तो फाइल कुछ बदलाव के साथ प्रिंट होगी
प्रिंट करने से पहले आप अपने स्ट्रक्चर को आवश्यकतानुसार स्केल कर सकते हैं
इसके लिए आप स्केल टैब में अनेक ऑप्शन्स उपयोग कर सकते हैं
आप अपनी स्केल टैब को जाँचें
अब पेज सेटअप विंडो को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें
आगे सीखे कि इमेज को एक्सपोर्ट कैसे करें
फाइल मेन्यू पर जाएँ सेव एएस इमेज सेलेक्ट करें
सेव एएस इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल टाइप क्षेत्र के पास इमेज ऑप्शन्स की सूची है
आप इमेज को एसवीजी ईपीएस पीडीएफ पंग जेपीईजी और कुछ अन्य में एक्सपोर्ट कर सकते हैं
एसवीजी इमेज सेलेक्ट करें
फाइल का नाम pentane इथेन एंटर करें
सेव बटन पर क्लिक करें
यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइल एसवीजी इमेज की तरह सेव हुई है
आगे इमेज को पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह एक्सपोर्ट करते हैं
फाइल मेन्यू पर जाएँ सेव एएस इमेज सेलेक्ट करें
सेव एएस इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल टाइप से पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें
फाइल का नाम pentane इथेन एंटर करें
सेव बटन पर क्लिक करें
यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइल पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह सेव हुई है
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा व्यू ऑप्शन्स ज़ूम फैक्टर पेज सेटअप प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट प्रिंट करना और इमेज एक्सपोर्ट करना
एक नियत कार्य की तरह स्ट्रक्चर्स को आ5 ब5 और जेबी5 फॉर्मेट्स में प्रिंट करें
इमेज को ईपीएस और पंग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करें
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद